चेंज है और यहां पर एक औरत वॉकिंग कर रही है।

पेटी के ऊपर तराजू भी रखा हुआ है।

और एक लड़की बैठी हुई है।

यह एक घर है जहां पर--

और यहां पर नीचे तीन डंबल भी रखे हुए हैं।

और एक लड़का खड़े होकर अपने बाल सही कर रहा है।

और जिम में काफी लोग जिम कर रहे है।

और यहां खाने की टेबल भी लगी हुई है।

और यहां पर ढेर सारे लोग हैं।

और अंदर केक भी रखे हुए हैं।

और इसके बाहर खुब ढ़ेर सारी गा कार खड़ी हुई हैं।

और इसके नीचे एक पन्नी भी पड़ी हुई है।

और इसके पीछे काफी पेड़ लगे हुए हैं।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

और एक तखत के नीचे चार व्हाइट कलर की पेटी रखी हुई है।

और एक नीला कलर का पिलर खड़ा हुआ--

और ऊपर ओम नमः शिवाय भी लिखा--

यह वह एक जगह है यहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्था--

और एक लाल कलर का बॉक्स भी रखा हुआ है।

और एक काली कलर की कुर्सी पड़ी हुई है।

जिसके बाहर कुछ गाड़ियां भी खड़ी हैं।

और पेड़ भी लगे हैं जो लाल और सफेद कलर से पुते हैं।

यह एक बहुत बड़ा मॉल --

और इसमें लिफ्ट भी लगी हुई--

और एक पेड़ भी लगा है जहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है।

यह वह जगह है जहां पर गौतम बुध की मूर्ति स्थापित है।

और इसके चारों तरफ खूब ढेर सारे पेड़ भी है।

उसपे एक बोर्ड लगा हुआ है वाई फाई का।

और हाथ धुलने की जीगा भी है।

और स्कूल के बाहर एक नील नीला कलर का बोर्ड लगा है।

जो काला और लाल कलर से पुता हुआ है।

और इसकी टाइमिंग भी लिखी हुई है और इस पर ताला भी लगा हुआ है।

यह एक दुकान है जिसमें बहुत सा सामान रखा हुआ है और--

और इसमें ढेर सारी अलमारियां बनी हुई है।